मैं यहाँ पर देख पा रही हूं सामने की तरफ एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ पैरो के निशान दिखाई दे रखे है जो की गड्डे से हो रखे है।

अ वो रखा हुआ है पिला-पिला सा गुम्बद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ लाल सॉक्स दिखाई दे रहा है एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो की--

दिवार पेन्ट हुआ है और यहाँ पर शटर लगा हुआ है जो कि काले रंग का दिखाई दे रहा है।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

जो कि खिड़किया बहोत सारी बनी हुई है ऊपर की तरफ गुम्बद की तरह मीनार दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बड़ी -सी पुरानी सी- इमारत दिखाई दे रही हैं।

जैसे की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर एक दूकान दिखई दे रही है सामने लिखा हुआ है स्पोर्ट गलाई।

अअअ कुछ गुब्बरे छत पर लगे हुए है कुछ पतंगे भी छत पर लगाए है सफ़ेद रंग की दिवारे गुब्बरे का रंग पीला और लाल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है पतंगा छत पर--

पत्तों का रंग बिल्कुल कंच हरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक चिडियाँ भी बैठी --

जैसे की मै यहाँ पर देख प् रही हु यहाँ पर एक बड़ा-सा कमरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्पोर्ट की कुछ चीजे दिखाई दे रही है बड़ा-सा बॉल भी दिखाई दे रहा है।

और बैडमिंटन दिखाई दे रहा है और भी छोटे से बॉल दिखाई दे रहे है कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे है कुछ टी शर्ट दिखाई दे रहे है कुछ शूज दिखाई दे रहे है।

आज कुछ रंग पिला सा और कुछ रंग हरा-हरा सा दिखाई दे रहा है पहाड़ी पार कुछ हरा-हरा सा घाँस भी है कुछ नीला सा भी--

और कुछ लाइटे दीवार जलती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ की छते दिखाई दे रही है जिसमे सफ़ेद रंग की लाइट जल रही है साइड में सोफा भी रखा हुआ है जो कि--

दिखाई दे रही है खिड़कियाँ बनी हुई हैं।